कलर का है। जिसके सामने लोहे का गेट लगा हुआ है और पीले कलर की परदी --

फिर साइड में कुछ पेड़ दिख रहे हैं और सामने एक ठेला और ठेला है। जिसकी बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है और नीचे --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

यहाँ पर देख र देख रही हो एक बड़ा सा हॉल है। जिसमें नीचे दोनों साइड ल लाइन से बच्चे बैठे हुए हैं और दो महिलाएं --

और ब्रिज ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। ऊपर बादल भी ब्लैक --

यहां पर दिख रहा है शाम --